इमारत का है जहाँ इमारत --

या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर का है जहाँ --

पेंगुइन नजर आ रहे हैं ओर वे --

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ व्यक्ति --

भारी-भारी मशीने लगा रक्खी हैं ओर --

और ए किसी का ऑपरेशन करके यहां पर आये हैं।

और यह एक प्राइमरी स्कूल है जहां स्कूल के अंदर --

ईशी मेले के अंदर का है जहां मेले के अंदर एक --

और कहे जहाँ पार्क के अंदर अनेक प्रकार के --

खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ग्राउंड --

अलग अलग रैक बना रखे हैं और उन रैकों में --

चिल्ड्रन्स डे बनाया जा रहा है।